एक जो इसका स्लाइडर है।

यह अमर ज्योति प्राइवेट कॉम्पनी का टिकट काउन्टर है जहाँ अन अन्यतर जाने के लिए वाहनों की बुकिंग की जाती है यहाँ कुछ पब्लिक भी खड़े हैं आस पास।

ले जाने ले आने का कार्य कर रहें हैं।

इनमें इसमें कपड़े का ही लगभग सारा दुकान है यहाँ एक टेम्पू खड़ी है जिस पर कोई समान लगा है एक मोटर साइकिल वाला है जो इधर से गुजर रहा है जिसमें जिसने हेलमेंट पहना है ।

ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।

यह एक कार्यालय का दृश्य है। इस कार्यालय के ऊपर इंग्लिश और बांग्ला में कुछ लिखा हुआ है।

कुशमंडी डेवलोपमेंट ब्लॉक कुशमंडी दक्षिण दिनाजपुर लिखा हुआ है।

यह गुरु भगवान की मूर्ति है ये काले रंग की मूर्ति है इसमें जो कप कपड़ा इन्होंने पहना है वो गोल्डन कलर का है जिस पर नग का काम किया हुआ है ।